ये पोल के दो बैग भी दिखाई दे रहा है।

दूर में एक सफेद रंग का टेबल है।

और उसका साइड में एक येलो और रेड कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और साइड में छोटा छोटा कमरा में बहुत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।

ग्रीन कलर का टेबल भी दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर उतर के एक लाल रंग का गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

लाल कलर के बैलून दिखाई दे रहा--

यह हमें एक सुंदर सा तालाब दिखाई दे रहा है।

तालाब का आगे में एक सुखा जगह दिखाई दे रहा है।

चित्र में एक येलो कलर का जनरेटर भी दिखाई दे रहा है।

में बड़ा सा लाइट जल के हैं।

मे छोटा छोटा चाकू भी दिखाई दे रहा है।

वो दुकान में बहोत सारा मछली दिखाई दे रहा है।

और लड़के लोग डांस करने वाला तस्वीर भी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में चार आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी का भी चेहरा पूरा ब्लर है।

इसका अंदर बहुत सारा कपड़ा टंगा के है।